इस पिक्चर में हमें एक प्लेट दिख रही है।

इस दुकान के बाहर हमें एक वाइट कलर की स्कूटी दिखाई पड़ रही है।

और भी बहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं।